लाइटे भी दरवाजे पे बहोत सारी लगाई गई है।

इसके पीछे एक बड़ी से फील्ड है जहां पे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है।

इस तालाब में चारों तरफ पीले पेंट लगे हुए हैं।

फूल को ब्लू कलर के चद्दर से कभर किया गया है।

बहोत सारे सामान और भी रखे हुए हैं।